इस तस्वीर में मुझे एक बैंक दिखाई दे रहा है और जिसका नाम है आई.सी.आई. बैंक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक ।

इस तस्वीर मे मुझे एक कार्यालय दिखाई दे रहा है और इस कार्यालय का नाम है बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण बिकास संस्थान।